इस तस्वीर में हमें बहुत से बच्चे नज़र आ रहें हैं जो की अपना कलाकृति दिखा रहें हैं और बहुत से टीचर्स भी यहाँ पर मौजुद हैं जो की बच्चों को देख रहें हैं।